यहाँ मुझे कुछ लोग दिखाइ दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे किराने का सामान दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं।